बाहर भी दिखाई दे रहा है और बहुत ज्यादा पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

बिल्डिंग का एंट्रेंस में तीन स्कूटी पार्किंग करके रखा है।

बिल्डिंग में एक बैनर लगा के रखा है।

एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और मंदिर में बहोत सारा लोग है।

बैठने के लिए बेंच और चेयर दिया है।

बहोत सारा लोग हैं बाइक भी पार्किंग करके रखा है।

टेबल का ऊपर मे एक सफेद कलर का प्लेट रखा है।

साइड में एक होटल का बैनर भी दिखाई दे रहा है।

घर का आगे में एक काला कलर का बाइक भी है।